यहाँ पर एक हनुमान जी की मूर्ति है और यहाँ पर एक झंडा लगा है और उधर पीपल का पेड़ है इस तरफ और उधर नदी है।

घास हो रही है इस तरफ टीन जैसा कुछ है और ब्लू कलर के बोर्ड हैं एक बड़ा सा ब्लू कलर का पोस्टर है उसमे कुछ लिखा है।

पर एक कुर्सी है और वो पोस्टर है पोस्टर मे बहुत सारे खेल है खेल के पर--